के नाम से दुकान है।

फल की दुकान है यहाँ पर एक लड़का फल बेच रहा है।

यहां पर बहुत सारे गमले रखे हुए--

यह तस्वीर एक पर्यटन सथल की तस्वीर है।

यह तस्वीर एक दुकान--

बाथरूम सीट रखी हुई है।

पर बहुत सारी बरफ गिरी--

यह तस्वीर एक मछली बाजार की तस्वीर है यहां--

इस तस्वीर में एक--

है यह एक मंदिर है तथा यहां पर बहुत सारे लोग हैं।

है यहां पर बहुत लोग घूम रहे--

पर टाइल तथा इंटें बनती--

यहाँ पर बहुत सारी तुड़ी गिरी--

दुकान की तस्वीर है यहां पर बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं।